पीछे लक्ष्या इंटरनेशनल एकेडमी लिखा हुआ है।

मुझे यहां एक चद्दर भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक चाय की दुकान दिख रही है।

मुझे यहां एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर ग्रीन कलर का--

मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।